पीछे एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है जोकि ग्रीन और ब्लैक रंग मे दिखाई पड़ रहा है पीछे का हिस्सा ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है ऊपर व्हाइट कलर का आसमान दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे सामने एक खिड़की भी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे ऊपर एक लैंप लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए है जो कि ग्रीन और ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रही है यहाँ की रेलिंग्स ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है नीचे रेड कलर का कारपेट जैसा बिछा हुआ है।

हमे सामने एक खेत दिखाई पड़ रहा है यहां पे बोहत सारी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं यहां पे सामने एक बॉय दिखाई पड़ रहा है उसने कान में लीड लगा रखा है ओर उसने एक स्वेटर पहना हुआ है पीछे बोहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

--ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की ग्रीन कलर का बैनर है सामने एक कुर्सी रेड कलर की रखी हुई दिखाई पड़ रही है।